दिवाल के ऊपर वाइट कलर का पेंट हुआ हुआ है और दिवाल ईऽ राईट व्हाइट दीवाल पर कुछ डिज़ाइन सा बना हुआ है नीचे के फ्लोर पर भी कुछ पेंट हुआ हुआ है।

इस फोटू में आप देख सकते है बहुत सारी बिल्डिंगा है इसी बिल्डिंग की अगर मैं बात करू इसमें काफी अलग-अलग कलर हुए हुए है ऑरेंज और संतरी --

काफी सारे गमले भी रखे हुए है मेज रखी हुई है।

दो कंप्यूटर रखे हुए हैं एक प्रिंटर है पीछे दीवार पर घड़ी लगी हुई है उसकी बराबर में पिलर के ओ सीलिंग से डिजाईन किया हुआ है छत--

यह संजीवनी मेडिकल है आप ऊपर बोर्ड दे सकते हैं और सामने फ्रंट पर दुकान पर भी लिखा हुआ है दुकान के ऊपर एक छोटी सी जाली है एक बल्ब भी लगा हुआ है और नीचे की साइड एक स्टॉल रखा हुआ है।

एक गोलाई एक तो सीडी है इसमे डंडे लगे हुए है ग्रीन दो व्हाइट और बराबर दो गोलाई मे झालिया है डब्बे वाली सामने के और एक पिल टावर खडा हुआ है और पैड भी आ रही है।

और उस-इस फोटो के अंदर तीन पिलर खड़े हुए है बच्चे खेल रहे है पेड़ बहुत सारे लगे हुए है।

यह एक मंदिर है मदिर के ऊपर तीन गोल्डन रंग के टेंपल लगे हुए है दो नीचे लगे हुए हैं

स फोटो मे आप देख सकते है एक ब्लैक कलर का खंबा स खड़ा हुआ है एन सामने नदी है नदी के अंदर दो नाव है जिसके ऊपर काफी सारे आदमी बैठे हुए है।

यह एक लाइट हाउस है बोर्ड लगा हुआ है बराबर मे सीडीया है सीडिओ पर गेट लगा हुआ है इसमे पेटिया रखी हुई है इस टूल रखा हुआ है पानी पीने का।

जी के फ्रंट की और एक पेड़ खड़ा हैऔर इसकी बराबर में छोटा सा हल्का सा लकड़ी का गुटका है।

इस फोटो में आप देख सकते हैं नदी है नदी के बराबर में ही एक वाइट कलर का घर बना हुआ है।

घर के ठीक सामने हल्की सी सीढ़ियाँ जा रही है और नदी के सामने काफी सारे पेड़ खड़े हुए है बड़े-बड़े टीला सा बना हुआ है।